ये एक लाल रंग की बिल्डिंग हैं।

घर बनता हुआ दिखाई दे रहा है।

अलग अलग तरह की एक बंदा--

इस इमेज में मुझे बहोत सारे--

इसमें बच्चे खेल रहे हैं।

चित्र एक पार्किंग का है जहां लोग अपनी गाड़ी खड़ी--